ग्रॉसरी की दुकान है और दुकान के अंदर अनेक प्रकार के आइटम रखे हुए नजर आ रहे हैं जैसे बिस्कुट --

यहाँ अनेक मोटरसाइकिले खड़ी हुई दिखाई दे रही है और उन सभी की सर्विस की जाएगी।

जिसका नाम है नौशाद मोटरसाइकिल वर्कशॉप और यहाँ अनेक --

यह दृश्य एक मूर्ति का है और यह मूर्ति एक --

यह शोरूम एक यामाहा कंपनी का शोरूम है जहां शोरूम के अंदर --

नाई की दुकान है। जहां दुकान के अंदर एक नाई एक व्यक्ति की कटिंग करते हुए दिखाई दे रहा है।